ये नावे है नाव के उपर कुछ व्यक्ती बैठे नजर आ रहे हैं है।

इधर साइड में कुछ और भी सीमेंट पड़े दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में--

इस फोटो में यहां पर एक दुकान है इस दुकान के बाहर पोस्टर लगा हुआ है।

कुछ हरे भरे पेड़ पौधे हैं एक पेड़ के पास एक व्यक्ति बैठा है बाइक के ऊपर --

इस फोटो में ये एक ऊंट का बाड़ा है इसमें बहोत सारी ऊंट खड़े नजर आ रहे है।

ये कुछ और भी सामान पड़े हैं पास में वो भी दिखाई दे रहा है इस फोटो में।

और घर के ऊपर ये पानी की टंकी दिखाई दे रही है ये बहुत ही सुंदर घर है इस फोटो मे --

इस फोटो में ये एक कोई मंदिर है इस मंदिर के फूलों से सजाया गया है।

और कुछ लेडिज हैं एक एक क्लास में खड़ी हैं।

इस फोटो में ये दो दुकानें हैं इस दुकानों के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

और कुछ बहोत ही बड़े बड़े पेड़ है वो भी अच्छे हरे भरे है आसमान में अच्छे बादल छाए हुए नजर रहे है।

पेड़ के छांव में गाड़ी खड़ी नजर आ रही है।

कंप्यूटर के पास कुछ बॉक्स हैं बॉक्स में भी कुछ अलग अलग प्रकार का सामान पड़ा दिखाई दे रहा है इस फोटो में --